यहाँ बर्निया दिखाई दे रही है जिनके ढक्कन काले नजर आ रहे--

यहाँ एक तालाब नजर आ रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है पानी का रंग सफेद दिखाई दे रहा है उ--

उस पर हरियाली दिखाई दे रही है आसपास पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ों का रंग हरा नज़र आ रहा है जमीन दिखाई दे रही-

यहाँ एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां एक फिसलपट्टी नज़र आ रही है उसका रंग भूरा दिखाई दे रहा है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं नीचे में--

पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों का रंग हरा नजर आ रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चों की ट्रेन नज़र आ रही है उसका रंग लाल दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें सा दिवस पर दीवारों का रंग क्रीम नज़र आ रहा है एक लड़का बैठा हुआ है वह लाल रंग--

दो तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक ने सफेद और नीले गुलाबी रंग का शर्ट पहना हुआ है शटर का रंग नीला हैं।

एक बच्चे ने नीले रंग की टी शर्ट एक ने पीले एक ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।